ब्यूटी पार्पर है यहाँ पे नीचे टेबल रखा है उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट है और बहुत सारे बारकोड़ भी रखे हुए हैं और वहां पर पा पानी की बोतल रखी हुई है उस --

ये एक मेला है यहां पे बहुत सारे लोग दिख रहे है एक रेड कुर्सी पे बहुत सारे जन बैठे है और जमीन के ऊपर ग्रीन कारपेट बिछी हुई है।

और बीच मे बहुत अच्छा फवारा चल रहा है और ऊपर झाड़ है और पीछे बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है और वो फवारे के आइड साइड अ बहुत सारे पोल लगे हुए है और सब वो फवारे को देख रहे है।

और माताजी त्रिशूल से एक अ राक्षस को मार रही है और अमम स्टेज पर पंडितजी भी है उनके हाथ मैं कुछ है और पूरा आयोजन का डेकोरेट हो रखा ह।

क्रिसमस के टाइम का अन्दर का रेस्टोरेंट का व्यू है वहां पे एक ट्री भी है टेबल के ऊपर वाइट टेबल के ऊपर और टी.वी में--